और यहां पर हमें एक अंकल दिखाई दे रहे हैं जो की पिंक कलर की टी-शर्ट ब्लैक कलर का लोअर --

और यहां पर एक अंकल जी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है ब्लैक कलर का पॅन्ट पहन रखा है और चश्मा लगाकर रखा है इन्होंने।

और हमें एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लू है और इसकी दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई है।